ऑफिस के दीवारे गुलाबी रंगी है।

यहाँ पर एक जगह दिखाई दे रही है।

यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए है लोग यहाँ पर ट्रैन में बैठने आए हैं।